और हमें दीवार पर तस्वीरें भी लगी दिखाई दे रही है।

तस्वीर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है टैटू स्टूडियो लिखा हुआ है कांच का बड़ा सा गेट लगा है उस पर और भी पोस्टर लगे हुए हैं।

बिजली का खंभा लगा हुआ है और बिजली के तार हमें दिखाई दे रहे--

ऊपर नीला नीला आसमान हमें डार्क दिखाई दे रहा है और जिसमें सफेद सफेद बादल हैं।